शोरूम दिखाई दे रहा है यहां पर होंडा सिटी जैसे--

और राइट साइड में यह पर एजेंट्स खड़े हैं।

इस कैफे का नाम बेस्ट बेस्ट कॉफी है।

इस तस्वीर में हमें पेट्रोल भारत--

भारत का ऑफिस दिखाई दे रहा है।

यह यह स्कूल एक सरकारी स्कूल है।

कारों की सर्विस भी की जाती है और नवी कार भी परचेज --

इस तस्वीर में हमें एक टोयटा का शोरूम दिखाया जा रहा--

बहुत सारे बेंच भी लगाए गए हैं यहां पर बहोत--

यहां पर लाल लाल पीले और नीले रंग के फूल लगे हुए हैं।

ये प्लेन प्लेन गो एयर इंडिया की फ्लाइट है।

इस तस्वीर में हमें एक स्टेशनरी नजर आ रही है जिसका नाम--

और यहां पर होल सेल में बुक सेल की जाती है।

ऑटो खड़े हुए हैं और यहां पर--

और इस पहाड़ पर एक छोटा सा झरना भी चल रहा है।